इसमें मुझे द सिटी कैफ़े लिखा दिख रहा है।

ढाबे में मुझे एक टीन का डला शीट दिख रहा हैं।

इसमें मुझे दो तीन व्यक्ती बनाते दिख रहे हैं।

हॉल में मुझे लकड़ी के ड्रॉज़ बने दिख रहे हैं।

हॉल में मुझे बहोत सारे कंप्यूटर लगे दिख रहे हैं।

इसमें मुझे एक स्टेज दिख रहा है।

इसमें मुझे लाइट फैन दिख रहे हैं।

इसमें मुझे लाल पीला फूल दिख रहा हैं।